बगल में पिज्जा का बना हुआ है।

पेड़ के दंडों के नीचे ऑरेंज और व्हाइट कलर हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में एक हरे रंग का ऑटो दिख रहा है।

पानी का बहाव काफी तेज लग रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक दूध का कैंटीन दिख रहा है।

वहां तालाब काफी गंदा दिख रहा है।